यहाँ पे एक व्यक्ति मच्छी को छाट रहा है उसके साइड में एक क क्रेट के अंदर बहोत सारे आलू रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक गॉर्ड भी बैठा हुआ है बैंक के सामने बहुत सारे वाहन भी पार्क की गयी है एक बाइक के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग टेहेल रहे है यहाँ आस-पास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है।

उहे और जिसके ऊपर मुस्कान लिखा हुआ है इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।